यहां पे एक मेला लगा है मेला में तारा मछली दिख रहा है।

यह बड़ा सा लंबा सा हॉल है।

और इस कांच के डिब्बा में सब समान रख दिया गया है।

साइड में बहुत सारा आदमी दिख रहा है उसके साइड एक दुकान है।

और उसके साइड में एक गेट लगा है शीशा का।

साइड में अलग अलग किस्म का लाइट लगाया गया।

सफेद कलर का सब कोई पहना हुआ है कोई रेड कलर का पहना हुआ है।

और यहां पे दो सैनिटाइजर का डिब्बा दिख रहा है।

पे डिजाइन अच्छा किया गया है।

स्कूटी के आगे में लोहा का गेट है।

उसके साइड में एक पोस्टर है पोस्टर में पोस्टर के साइड में एक बड़ा सा पखल है।

और यहां पर बहुत सारे लाइट भी अलग अलग किस्म का लगाया गया है।

एक बच्चा टेबल के पास खड़ा है।

इसके ऊपर में एक फैन है।

एक डिब्बा नीचे में है।

इधर से मोटरसाइकील जा रहा हैं।

पोल है और बहुत सारा पेड़ भी लगाया गया है।

और यहां पे बहुत अलग अलग किस्म का सामान रखा गया है।

साइड साइड में कोई डिज़ाइन लगाया हुआ है।

और सामने मे कुर्सी भी है।

आगे में बहुत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है।

को अच्छा सजाया गया है।

हॉर्लिक्स का डिब्बा दिख रहा है सामने में उसके साइड में सेरेलेक्स का डिब्बा दिख रहा है।

आगे में बहुत सारा सामान रखा गया है।

यहां पे यह रूम में चार पौधा है।

आगे में बहुत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है।

और यहां पे एक बड़ा भी मछली दिख रहा है।

और यहां थोड़ा पानी भी है।

यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग पेड़ पौधा लगाया हुआ है।

वो आदमी पेट्रोल पंप के पास खड़ा है।

ये बहुत बड़ा घर है घर के साइड साइड में बहुत सारा पेड़-पौधा लगाया गया है।